बाहर बोर्ड भी लगे हुए है दोनों तरफ़ ये फोटो लगे हुए है उनपर मुकुट डला हुआ है साइड मे कोई दुकान उकान भी है।

ये पूरा अच्छा सा कवर हो रहा है और ये अच्छे से डेकोरेट हो रही है बहोत अच्छा लग रहा है इसपर ये--

कुछ छिपे हुए भी हैं फूल वूल भी और एक पिंक कलर का गेट लगा हुआ है और एक ये--

कई बेड वेड भी रखे हुए हैं कई स्ट्रेचर भी रखे हुए हैं।

एक ये बहोत बड़ा सब ट्रक दिखाई दे रहा है और सड़क भी दो तीन भी है और--

इसके पीछे कोई ट्रैक्टर वोक्टर भी खड़ा हुआ है और एक--

मकान दिख रहा है उसे नीचे पैडी वैडी लगी हुई है ग्रिल भी लगी हुई है बहुत अच्छे से पेंट हो रहा है और एक--

एक ये बाइक खड़ी हो रहा बहोत सारे एक बाइक की दुकान भी है एक बाइक खड़ी भी हुई है और ये पूरा--

पंखे भी लाग रहे हैं और ये वाइट कलर का पेंट हो रहा है।

और पूरे येह मैगी वैगी मोमबत्ती येह बहुत सारे सामान रखा हुआ है।

व्हाइट कलर का सोफा है और पूरा ये कपड़े वपडे भी कुछ कम्बल वंबल भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है और इसमें--

एक बहोत बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है और उसमें कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

बहोत अच्छी मूर्ति बनी हुई है और ये ये--